यहां पर बहोत सारे बॉक्सेस रखे हुए हैं कुछ लोग मुझे यहां पे दिखाई दे रहे हैं।

इस तस्वीर मे मुझे एक पेट्रोल पंप नजर आ रहा है जिसके आस पास लोहे के पुल और तारे दिख रही है।

यहां पे तार के साथ कुछ टोवल लटका रखा है और ड्रेसिंग शीशे के सामने एक बॉटल रखी--